कुछ लोगों ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई है तो कुछ लोगों ने --

जिसका रंग नारंगी सफ़ेद और हरा है।

एक केक का रंग पीला कलर का है जिस पर दो --

एक गार्ड भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ मटके हैं तो कुछ गुल्लक है |

वहाँ पर तरह-तरह की ज्वैलरी दिखाई दे रही है।